हम्म यहाँ पासपोर्ट ऑनलाइन पेमेंट सारा कुछ होता है यहाँ पे तीन आदमी खड़े--

अम्म दो आदमी खड़े और एक आदमी नीचे बेंच पर बैठे हुई हैं यहाँ पे दो साइकिल भी लगे हुए हैं।

और ये एक मॉल लग रहा है जिसमें बहुत सारे कपड़े टांगे हुए हैं कुछ कपड़े रखे इधर स्वेटर वैटर रखा हुआ है ठंडी का कपड़ा--

दोनों सामने सामने लगे हुए हैं और इधर पेट्रोल पंप है आइस क्यूब ऊपर में लिखा हुआ है बोर्ड पे।

फल-फूल बेच रहा है केला है अनार है सेब है बहुत सारा फल है जो कि ये --

और यह देखिए ये एक होटल टाइप का है जहां पे बहोत सारे आदमी खड़े है कल है एक बाड में एक ब्लू कलर का कल गाड़ा हुआ है।

और बाएँ हाथ को कलाई से अ लो लोहा पकड़े हुआ है।

उस साइड में बहोत सारे आदमी दिख रहे एक बाइक भी दिख रहा है उधर और इधर भी दो आदमी बैठे हुवे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं।

और ये देखिए ये क्या है एक ब्लू कलर की आपाची लगी हुई है बाइक के स्टैंड पे और आगे घर दिख रहा है।